सारे बच्चों का जूता भी अलग अलग है।

इस फोटो में एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक बहोत बड़ा सा जगह दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में कुछ लोग गाड़ी से आते जाते दिखाई दे रहे हैं रोड पे।

बगल में पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी बनाया हुआ है।

इस फोटो में एक स्टेशनरी शॉप दिखाई दे रहा है।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

और ऊपर में एक टी_वी स्क्रीन भी लगा हुआ है।

इस फोटो में कुछ बच्चे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट का एक्टिविटी कर रहे है।

इसके टायर में डिस्क ब्रेक लगा हुआ है और यह साइकिल स्टैंड के भरोसे खड़े है।

सारे कार्स का आगे वाला बोनट खुला हुआ है।

बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

सामने में ग्राउंड एक खाली एरिया दिख रहा है जिसमें टायर्स के निश--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

इसमें अलग अलग तरीके के कपड़े रखे हुए हैं।